यह एक स्कूल का कोचिंग क्लास का रूम है जिसमें बेंच टेबल कुर्सी हैं ।

यह एक पोर्टल है जहाँ बार्गिंग हॉस्पिटल के बगल मै एक घर है घर के पास होंडा की गाड़ी खड़ी हुई है।